ये नवरात्री का फोटो दिखाई दे रहा है। जहाँ माता जी का फोटो है। माता जी बैठी हुई है।

सामने से एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा --

ऐसा लग रहा है वो मोबाइल से अपनी फोटो खीच रहा है। अपनी सेल्फी ले रहा है।

खुला आसमान है। बादल दिखाई दे रहे हैं और पूरी हरियाली-हरियाली दिखाई दे रही है।